वो अपने आप को एक बेल्ट की सहयता से बांधा हुआ --

नया क्षेत्र कोच जनपद जालौन लिखा हुआ है तथा अंदर के साइड में छोटी छोटी बच्चियां --

तथा कुछ बिजली के खम्भे लगे हुए हैं व एक चेयर रखी हुई है। घर की छाया में एक कुत्ता सोया हुआ --

ये उपलब्ध है। ये प्रिंट की जाती है।